ये ऑरेंज होलडर का बैनर पे ऊपर लिखा हुआ है यहां पर बहुत सारे झाड़ू मिल रहे हैं बहुत सारे सामान मिल रहे हैं जैसे कि--

ये मंदिर है और इस मंदिर के सामने में बहौत सारे लोग बेठे हुए हैं कुछ लोग स्टेज के ऊपर के तरफ बेठे हुए हैं चेयर में ये एक समिलन है।

और यहां बोहोत सारे लेडीज वेयर मिल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में भी और ग्राउंड फ्लोर में भी यहां बोहोत सारे डमीज लगाए गए हैं डमीज में --

ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जैसे कि लेडीस लोग को यूज करने के लिए सामान रखी गई है यहां पर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है शहनाज हुसैन--

ट्वेंटी फोर कैरेट्स का गोल्ड का ये प्रोडक्ट है जैसे कि यहां पर एंटी एजिंग जेल टविन इन वन वाला एक बॉक्स रखा हुआ है।

देखने में लग रहा है सर और मैडम लोग खड़े हैं एक मैडम ने स्वेटर पहना है ऑरेंज कलर की सलवार कमीज पहनी है कुछ सर खड़े हैं इस गेट के अंदर सारे बच्चे अंदर की तरफ मुझे जाते हुए नज़र --

यहां पर कई जगह टेलीविजन लगी गई है जहां पर वो स्क्रीन ऑन है वहां पर कुछ-कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं पॉट में दरवाजे हैं।

और ऊपर की तरफ जो बोर्ड लगी हुई है वो ऑरेंज कलर की बोर्ड है और स्कूल का नाम है पी_जी_डी_ए_वी महाविद्यालय--

और यहां पर एक क्लब है फिट हाडी क्लब है उसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं नीचे की तरफ में वाइन एंड बियर की शॉप है कंफेक्शनरी शॉप है।